लाइटिंग भी एडस्ट की गई है और यहां पे कैमरा लगा हुआ है और टाइल्स भी टाइल्स की फर्श बनी हुई है।

काफी आकर्षक जगह है जहां पे एक बैठने की जगह है।

यहां पे सारा सामान रखा हुआ है नीले कलर के टेबल के ऊपर।

दो टेबल है साइड साइड में जो कि एडजस्ट है फर्श में।

टेडी बीयर हैं और काफी सारी रिमोट कंट्रोल कार्स भी उपलब्ध हैं।

उपर इसके वायर लगी हुई है और साइड में एक मकान बन रहा है और नीचे हरे हरे घास भी फैली हुई है।

इसमें लाइटिंग के काफी सारे खंभे उपलब्ध है और कुछ व्यक्ति काफी सारे व्यक्ति बैठे हुए।

यह एक बाजार है जहां पे फूल और फल और सब्जी आदि मिल रहे हैं।

रखा हुआ है सफेद कलर की कुर्सी है और इसमें मैट बिछाई गई हुई है।

बाकी इनकी पोशाक काफी चमकीली और लाल और गोल्डन कलर की है।

यह एक फूलों के व्यापार की जगह है जहां पर काफी सारे फूल हैं।

काफी आकर्षक है और इसमें काफी पर्दे लगे हुए हैं साइड में जिसका कलर आसमानी नीला दिखाई दे रहा है।

और एक रोड भी बने हुए हैं काफी सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

टॉप भी रखा हुआ है और एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर।

यह एक लाइब्रेरी के प्रकार का है जिसमें काफी सारी बुक्स है।

यहां पर कमल का फूल उपलब्ध है पीले कलर के गेंदे का फूल उपलब्ध है और इस माले के बीच बीच में--

यहां पे काफी पोस्टर छपे हुए हैं और चिपके हुए हैं।

यह एक दुकान है जो यहां पे खाने पीने का सामान और उपयोग करने वाला सामान मिलेगा।

वह एक बाटल रखी हुई है और यह भूरे कलर की इसकी बाटलो है।

यह एक ऑफिस के प्रकार का काफी बड़ा कमरा है जिसकी वार्डरो लाल कलर की हैं और एक प्रिंटर रखा हुआ--

क्लॉक वाली घड़ी भी है और कप भी है और एक छोटी सी टेबल --

यह एक कार और बाइक की शॉप है जिसका नाम होंडा और ह्युंडई --

यह एक योगा रूम और जिम रूम है यहां पे लोग एक्सरसाइज करते है यहां पे काफी सारी लड़कियां एक्सरसाइज कर रही हैं।

यह एक टहलने का दृश्य दिखा रहा है यहां पर एक औरत टहल रही है।

यहां की फर्श हल्की सी चितकबरी है जो जिसपे डॉट डॉट डॉट का निशान है।

कमरा है जिसके ऊपर जेसस के चिन्ह बना हुआ है और इसपे कुछ लिखा हुआ है हरे कलर का।

इसमें तिलिया भी दर्शाई गई हैं और इसके आगे की बाउंड्री के ऊपर शेर की आकृति बनाई गई है।

यह एक ऐसी जगह है जहां पे काफी बड़ा गूगल से रिलेटेड एक ऑफिस बना हुआ है।

यह एक इंस्टिट्यूट है यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं।

यहां पर तीन व्यक्ति सामने दिख रहे हैं जिसके एक व्यक्ति के हाथ में हेलमेट है और एक बच्चा भी दिख रहा है।